libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे एक form में list box form control जोड़ें
पिछले tutorial में हमने सीखा था कि कैसे libreoffice base का इस्तेमाल करते हुए form को बदलें
हमने पिछले tutorial में form के इस चित्र को भी देखा था जिसे हमने बनाना और उसमें बदलाव करना शुरू किया था
और जब हमारी डिजाइन पूरी हो जाती है हमारा form इस प्रकार से दिखेगा
यहाँ ध्यान दें हम books issued table में पहला record देख रहे हैं
और names list boxes में book ids और member ids के बजाय असली book titles और member names देख रहे हैं
यहाँ record को सेव करना बदलावों को अन्डू करना इत्यादि जैसे कार्यों को करने के लिए नीचे कुछ push buttons हैं
अतः इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसे अपने form में list box form control जोड़ें
चलिए सबसे पहले libreoffice base program खोलते हैं यदि वह पहले से नहीं खुला है
और अपना library database खोलते हैं
यदि base पहले से ही खुला है तो हम library database यहाँ file menu के अंदर open पर क्लिक करके खोल सकते हैं
या file menu के अंदर recent documents पर क्लिक करके
अब हम library database में है
चलिए books issued to members form को खोलते हैं जिसे हमने पिछले tutorial में बनाया था
यह करने के लिए चलिए बाएँ panel पर forms icon पर click करते हैं
और दायें panel पर books issued to members form पर दायाँ click और फिर edit पर click करिये
हम अब form design window में हैं
चलिए सबसे पहले book title label को देखते हैं
ध्यान दीजिये text box यहाँ केवल bookid संख्याएँ दर्शाएगा जोकि हमारी आँखों के लिए अनुकूल नहीं है
हमारे लिए books titles अनुकूल हैं
और इसलिए इन titles को दर्शाने के लिए base कुछ तरीके प्रदान करता है और उनमे से एक तरीका है list box form control का इस्तेमाल करना
चलिए देखते हैं कैसे
इसके लिए चलिए सबसे पहले book title label के बगल में text box को हटाते हैं
हम यह text box पर क्लिक करके कर सकते हैं जो इसे परिचित हरे डिब्बों के समूह से चुनेगा
और फिर दायाँ क्लिक और फिर नीचे cut पर क्लिक करके
यहाँ हमने text box हटा लिया है
अब हम यहाँ एक list box form control रखेंगे
इसे form controls toolbar में accessed कर सकते हैं
हम इसको view menu और form controls पर क्लिक करके ला सकते हैं
ध्यान दीजिये कि base हमें अनेक प्रकार के form controls प्रदान करता है; चलिए tool tips को पढने के लिए अपना cursor इन आइकंस के ऊपर रखते हैं
अपना list box icon खोजते हैं
वह यहाँ है इस icon पर केवल एक बार click करते हैं
और mouse pointer को form में let चलते हैं; ध्यान दीजिये कि यह एक पतले plus चिह्न में बदल गया है
अब हम अपने form में लिस्ट बॉक्स form control now सकते हैं
इसके लिए हम अपने form में केवल click drag और drop करेंगे
इसे वहां रखते हैं जहाँ हमने पहले text box हटाया था
ध्यान दीजिये कि list box wizard नामक एक नया wizard form design window के ऊपर खुल गया है
अब यह wizard हमें book title label में list box जोड़ने में मदद करेगा
चलिए देखते हैं कैसे
इस wizard में सबसे पहले table चुनते हैं जहाँ से हमें book titles मिलेगा
हम सूची से books table चुनेंगे और next button पर click करते हैं
अब इस window में हमें field चुनने की आवश्यकता है जोकि list box में दर्शाई जाएगी
और हम जानते हैं कि title field book titles को संचित करता हैं
अतः अगले step पर चलते हैं
यह आखरी विंडो है जहाँ हम कुछ अद्भूत करेंगे
हम सम्बन्धित tables और fields को जोड़ेंगे
field के names को देखिये बायीं तरफ fields in the value table books issued table की fields हैं
और दायीं तरफ fields in the list table books table की fields हैं
हम यह भी जानते हैं कि book id books table में मुख्य field है और books issued table में दिखाई गयी है
अतः हम बायीं तरफ की सूची जो है field from the value table में से book id पर click करेंगे
अगला हम दायीं तरफ की सूची जो है field from the list table में से book id पर click करेंगे
इस wizard को बंद करने के लिए finish button पर click करिये
यहाँ हमने सम्बन्धित tables और fields को जोड़ लिया है
अब base list box में स्वतः ही सारे book titles दर्शाएगा
अब form सेव करते हैं
और इस window को बंद करते हैं
base tutorial के अगले भाग में हम अपने form में बाकी के form controls को जोड़ना जारी रखेंगे
और हमारा form इस तरह से दिखेगा जब हम समाप्त कर लेंगे
यहाँ एक नियत कार्य है
member ids के बजाय member names के सूचीकरण के लिए एक दूसरा list box जोड़िए
list box के स्थान के लिए अभी चिंता न करें केवल उसको member name label के बायीं तरफ बनाइए
name अपने अगले tutorial में उसको member name के आगे ठीक से पुनर्स्थापित करेंगे
अब हम libreoffice base में list box control पर tutorial में समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में: हमने सीखा कि कैसे: एक form में एक list box form control जोड़ें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
यह project